एक सर खड़े हुए है और एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ है।

और यहां से नीचे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टेबल वागेरा डली हुई है।

मोटरसाइकिल का कलर है कुछ सफेद और काले कलर की हैं।

जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ हैं यहाँ पे काफी सारे जेंट्स खड़े हुए हैं काफी सारी लेडीज खड़ी हुई है।

असपन दिखाई दे रहा है और एक टेंपल बना हुआ है। जिसमे सफेद कलर से पेंट है। यहाँ पे एक क्यारी टाइप की बनी हुई है।

और यहां से बोहोत सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं और काफी सारे यहाँ पे पेड़ लगे हैं।

यहां पर कुछ विद्युत उपकेंद्र कर के कुछ लिखा हुआ है पीले कलर का बोर्ड है। यहां पर ज्यादा तर इलेक्ट्रॉनिक का --

और उपर रेलिंग टाइप की बनी हुई है बहुत बड़ा डैम बना हुआ है यहां बहुत सारा पानी है।

अं मतलब कि एक स्टेशन है। इसटेशन पे ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है। काफी सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं।

और बीच में एक लोहे का गेट लगा हुआ है। लेफ्ट राइट दोनों साइड बिल्डिंग बनी हुई हैं।

और एक झारा रखा हुआ है झारा रखा हुआ है और तीन नाव रखी हुईं हैं।

और लाल कलर से और नीले कलर से और हरे कलर से कलर कर रही हैं लड़कियाँ जिनकी ड्रेस है ब्लू कलर की।

और साइड मे भी एक शॉप बनी हुई है। यहाँ पे काले कलर की मोटर साइकिल खड़ी है और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है।

ये स्कूल कुछ ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। जिसने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सफेद कलर की लाइट लगी हुई हैं ट्यूबलाइट लगी हुई हैं।

रेल की पटरी पर से ऊपर कुछ तार वगैरह लगा हुआ है।

एक मंदिर टाइप का बना हुआ है जहां पर काफी सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

और फूलों की माला है और एक पंडित बैठे हुए हैं जो पूजन कर रहे हैं दिए कि जोत जल रही है।